यहाँ मुझे कई सारी किताबें दिखाई दे रही हैं वे तीन सफ़ेद बल्ब भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसको सामने से दीवार पर कारीगरी के सजाया गया है।

यहाँ स्कूल का दृश्य दिखाया गया है।

ये यहाँ एक पाइप फैला नजर आ रहा है।

जो कि बहुत बड़ा है यहाँ पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे हैं यहाँ एक --